तस्वीर में एक सड़क के किनारे का दुकान का दृश्य दिखाया गया है जो एक छोटा सा व्यापारी है।

आदमी नीले रंग के शर्ट पहने उनके सामने खड़ा हो रहा है।

मॉल के सामने बहुत सारी दो पहियां वाहन खड़ी है और कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

में अरमानी एक्सचेंज लिखा हुआ है।

मछली खरीदते हुए कुछ लोग भी उनके पास है।

सूर्य की तेज रोशनी पानी पर पड़ कर पानी को उजागर कर रही है।

तस्वीर में बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जिसमें अधिकाश महिलाएं हैं और कुछ लोग भी म अ हैं।

बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं वे सब एक कतार में खड़े हैं।

एक व्यक्ति अपने मोबाइल पर कुछ काम कर रहा है।

एक अन्य व्यक्ति जो भूरी कलर का कोट पहना है वो मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है।

उसके पीछे बड़े अक्षरों में टोयोटा का साइन बोर्ड भी लगा हुआ है।

उसके बगल में एक आदमी भी रोड पर चलता दिखाई दे रहा है।

दिखाए गए दृश्य में एक जिम का दृश्य दिखाया गया है जिसमें बहोत सारे उपकरण है।